दूसरी बिल्डिंग में बहुत सारे बलून टांगे हैं।

ये रखे हैं स्टील के बोहोत सारे।

और एक मेज भी रखे हैं प्लास्टिक के बर्तन बहुत सारे--

बहोत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं।

दो लड़के मंदिर के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं।

जिनमें प्लास्टिक के उ छोटे डब्बे रखे हैं।

इस बिल्डिंग मे तीन फ्लोर है और एक बहुत बड़ी बालकनी है।

मेन दीवार पर भारतीय स्टेट बैंक का बोर्ड लगा है।

ये एक शाम का समय है जिसमें सूरज छिपता हुआ दिखाई दे रहा है।